मै-दान हे चारों तरफ बाउन्ड्री लोहे के तारोंसे बनी हुई हे एक पानि का बरतन रखा हुआ हे उसमे सफेद खरगोस हे।

एक साइड पेड़ खड़े हुए हैं एक साइड खड़े हुए हैं खुला आसमान है पानी में ऑरेंज कलर है।

पर्दा टंगा हुआ है उस पर रिंग लाइट लगी हुई है स्टार शेप की और एक लड़की एक --

हरे पीड़ हे घने पानी भरा हुआ हे चारो तरफ बंशसे बाउन्ड्री हुई हुई हे पानी हरे रंग का हे पानी मे सतुरमुर्ग हे।

ईमाराते हे दुकाने हे गाड़िया चाल रही हे इस्कूटी बाईक --

लड़के सड़क परचल रहे है गाड़िया खड़ी है एक सामने बिल्डिंग बनी- हुई हे।

सामने एक दर-वाजा हेदर-वाजा के अन्दर एक मेस पर एक बुद्धा की मूर्ति रखी हे मूर्ति चा पॆ --

ठंड का मौसम है गर्म कपड़े पहने हुए है पहाड़ है और कोहरा पड़ा है खुला आसमान है।

झूले ग्राउंड से लेकर पानी में आकर गिरेंगे कुछ बच्चे झूल रहे हैं।

मेआगे चेयारस् लागि हुई हे लाईटे जल रही हे पर्दे लागे हुये हे पंखे लागे हुये हे उपार सीसेकी ड्रॉर बानी हुई हे।

एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई है दो लोग कुछ सामान देख रहे हैं प्लास्टिक के बहुत सारा सामान रखा है।